पीठ संकट मोचक धाम--

येह गाड़ियां सर्विस हो रही है।

पी थ्री जिम दिखाई दे--

हॉस्पिटल दिख रहे--

इस तस्वीर में एक--

दिखाई दे रही हैं।

यहां पीछे लाइट जली है।

एक जिम दिख रहें हैं।

दो व्यक्ती आपस में बात कर रहे--

लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे।

इस तस्वीर में आप एक रेस्टोरेंट --

दिखाई दे रहे हैं।

एक गाड़ियों का शोरूम देख रहे हैं।

जहां एक छोटी बच्ची भी--